इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लिबरऑफिस बेस क्या है
बेस का उपयोग करने के लिए जरूरी चीजें
आप बेस में क्या कर सकते हैं
रिलेशनल डेटाबेस की मूल बातें नया डेटाबेस बनाना टेबल बनाना
लिबरऑफिस बेस लिबरऑफिस सूट के डेटाबेस का प्रारंभिक भाग है
बेस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के समतुल्य है
बेस फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है उपयोग और वितरण के लिए मुफ्त है
बेस का उपयोग करने के लिए आवश्यक चीजों को देखते हैं
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए सिस्टम आवश्यकताएँ निम्न हैं
माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सर्विस पैक 4 और उच्च XPएक्सपी विस्ता विस्टा या विंडोज 7 pentium कंपैटिबल पीसी 15 जीबी तक उपलब्ध हार्ड डिस्क स्पेस
उबंटु लिनक्स के लिए सिस्टम आवश्यकताएँ निम्न हैं
लिनक्स कर्नेल वर्जन 2618 या उच्च160 पेंटियम कम्पैटबल पीसी
विंडोज और लिनक्स दोनों के संस्थापन के लिए हमें 256 एमबी राम की आवश्यकता है
पूर्ण सिस्टम आवश्यकताओं के लिए लिबरऑफिस बेवसाइट पर जाएँ
आपको जावा रनटाइम एनवायर्नमेंट संस्थापित करने की आवश्यकता भी है जिसे आप निम्न लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं
केन्द्र में फ्री जावा डाउनलोड नामक लाल बटन पर क्लिक करें
एक बार फाइल डाउनलोड हो जाय इस पर डबल क्लिक करें और संस्थापन के लिए निर्देशों का अनुकरण करें
चलिए लिबरऑफिस बेस के संस्थापन को देखते हैं
यदि आपने पूर्ण संस्थापन ऑप्शन के साथ लिबरऑफिस सूट पहले से ही संस्थापित किया हुआ है
तो आप अपनी स्क्रीन की बायीं ओर सबसे नीचे स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके लिबरऑफिस बेस ऐक्सेस कर सकते हैं
अल्ल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और फिर लिबरऑफिस सूट पर क्लिक करें
यदि आपने लिबरऑफिस सूट संस्थापित नहीं किया है
आप ऑफिशियल बेवसाइट पर जाकर और डाउनलोड लिब्रियोफिस नामक ग्रीन क्षेत्र पर क्लिक करके बेस संस्थापित कर सकते हैं
विस्तृत निर्देश लिबरऑफिस सूट के पहले ट्यूटोरियल में उपलब्ध हैं
याद रखें संस्थापित करते समय बेस को संस्थापित करने के लिए कंप्लीट ऑप्शन का उपयोग करें
ठीक है अब अगले विषय पर चलते हैं
आप लिबरऑफिस बेस में क्या कर सकते हैं
बेस में आप सुनियोजित डेटा संचित कर सकते हैं
डेटा एंट्री क्रियान्वित कर सकते हैं और फॉर्म्स का उपयोग करके डेटा देख सकते हैं
क्वेरीज़ का उपयोग करके जानकारी पुनः प्राप्त कर सकते हैं और प्रिंट के लिए तैयार अच्छी रिपोर्ट बना सकते हैं
बेस आपको डेटाबेसेस के प्रबंधन में मदद करता है
जैसा कि आप जानते होंगे डेटाबेस डेटा फॉर्म्स क्वेरीज़ और रिपोर्ट्स का समूह है
उदाहरणस्वरूप बेस का उपयोग ग्राहक की जानकारी के डेटाबेसेस का प्रबंधन करने के लिए किया जा सकता है
सेल्स ऑर्डर्स और चालान को ट्रैक करना छात्रों की श्रेणी के डेटाबेसेस का अनुरक्षण करना या लाइब्रेरी के डेटाबेस को बनाना
चलिए अब डेटाबेसेस के कुछ मूलतत्वों के बारे में सीखते हैं
डेटाबेस टेबल्स में सुनियोजित और संचित डेटा है
टेबल्स रोज़ और कॉलम्स में संचित डेटा के अलग अलग टुकड़े हैं
इस तरह के डेटाबेस को रिलेशनल डेटाबेस भी कहते हैं जहाँ कॉलम्स का उपयोग करके टेबल्स का संबंध एक दूसरे से होता है
लाइब्रेरी के लिए सिम्पल डेटाबेस का उपयोग करें
लाइब्रेरी पुस्तकों का संग्रह हो सकता है
और पुस्तकें लाइब्रेरी के सदस्यों को जारी की जा सकती हैं
पुस्तक में शीर्षक रचनाकार प्रकाशक प्रकाशन का वर्ष और कीमत हो सकती है
इन्हें अभिलक्षण या विशेषता कहते हैं
उसी तरह लाइब्रेरी सदस्य का नाम फोन नम्बर और पता होता है
और लाइब्रेरी केवल इसके सदस्यों को ही पुस्तकें जारी करती हैं
अब देखते हैं कि हम रोज़ और कॉलम्स के व्यक्तिगत टेबल्स के रूप में इस डेटा को कैसे संचित कर सकते हैं
प्रत्येक पुस्तक के बारे में जानकारी बुक्स टेबल में संचित कर सकते हैं
इसकी विशेषताएँ कॉलम्स बनने के साथ बुक टाइटल ऑथर पब्लिशर यियर ओएफ पब्लिकेशन और प्राइस
प्रत्येक पुस्तक को भिन्न करने के लिए हम बुकिड नामक यूनिक आइडेंटिफायर कॉलम भी जोड़ते हैं
इस तरह हमारे पास उसी शीर्षक की दो पूरी तरह से अलग पुस्तकें हो सकती हैं
उसी तरह मेंबर्स टेबल में कॉलम्स हो सकते हैं जैसे कि नामे और फोन
और विशिष्ट पहचान या प्रत्येक सदस्य को भिन्न करने के लिए मेंबर इद
और हम बुकसिश्यूड नामक तीसरे टेबल में सदस्यों को जारी की गयी पुस्तकों को ट्रैकपता लगाना कर सकते हैं
यह टेबल पता लगायेगा बुक इश्यूड थे मेंबर डेट ओएफ इश्यू डेट ओएफ रिटर्न एक्चुअल डेट ओएफ रिटर्न व्हेथर चेक्ड इन ओर नोट
इनमें डेटा जोड़ने के लिए हम इन टेबल्स में रिलेशनशिपसंबंध स्थापित कर सकते हैं
अब यह हमें रिलेशनल डेटाबेस का प्रबंध करने में मदद करता है
रिलेशनल डेटाबेसेस पर एडवांस्ड विषयों के लिए spoken tutorialओआरजी पर जाकर हमारे अन्य ट्यूटोरियल्स का अनुकरण करें
ठीक है अब लाइब्रेरी नामक अपने पहले बेस के डेटाबेस के साथ शुरूआत करते हैं
नया डेटाबेस बनाने के लिएपहले बसे programबेस प्रोग्राम को ओपन करें
फिर स्क्रीन के सबसे नीचे तल पर विंडोज के स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें फिर अल्ल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें फिर लिब्रियोफिस सूटे और लिब्रियोफिस बसे पर क्लिक करें
डेटाबेस विजार्ड नामक एक पॉप अप विंडो ओपन होती है
नया डेटाबेस बनाने के लिए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
निम्न विंडो में फिनिश बटन पर क्लिक करें
यह सेव एएस विंडो ओपन करता है
क्योंकि हम लाइब्रेरी डेटाबेस बना रहे हैं हम फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स में लाइब्रेरी टाइप करेंगे
और फिर सेव बटन पर क्लिक करें
अब हम अंदर हैं
आगे डेटा को संचित करने के लिए टेबल्स बनाएँ
नया टेबल बनाने के लिए बायीं ओर डेटाबेस सूची में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें
दायीं ओर पर टास्क सूची में क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू पर क्लिक करें
यह दूसरा विंडो ओपन करता है
यहाँ फील्ड नेम के नीचे पहले कॉलम के रूप में बुकिड टाइप करें
फील्ड टाइप कॉलम पर जाने के लिए टैब की का उपयोग करें
क्योंकि बुकिड प्रत्येक पुस्तक के लिए भिन्न नम्बर होगा ड्रापडाउन लिस्ट से फील्ड टाइप के रूप में इंटीजर चुनें
नीचे के सेक्शन में फील्ड Propertiesफील्ड प्रोपर्टिज बदलें
ऑटोवैल्यू को नो से येस में बदलें
यह फील्ड अब प्रत्येक पुस्तक को विशिष्ट रूप से पहचानेगा
दूसरे शब्दों में इस फील्ड को प्राइमरी की भी कहते हैं
बुकिड फील्ड की बायीं ओर पीले की सिम्बल पर ध्यान दें
चलिए देखते हैं कि हम फील्ड नेम्स के लिए फील्ड टाइप्स कैसे चुनते हैं
फील्ड टाइप्स टेक्स्ट इंटीजर न्यूमेरिक डेसिमल या डेट हो सकते हैं
टेक्स्ट का उपयोग उन फील्ड्स के लिए करें जिसमें साधारण जानकारी हो उदाहरणस्वरूप नाम शीर्षकपता
इंटीजर न्यूमेरिक डेसिमल का उपयोग उन फील्ड्स के लिए करें जिसमें केवल नम्बर्स शामिल हो सकते हैं
उदाहरणस्वरूप न्यूमेरिक का उपयोग कीमत की जानकारी वाले फील्ड के लिए इंटीजर का उपयोग वर्ष के लिए करें
अब बाकी फील्ड्स बनाते हैं
टाइटल फील्ड टाइप टेक्स्ट ऑथर फील्ड टाइप टेक्स्ट Published यियर फील्ड टाइप इंटीजर पब्लिशर फील्ड टाइप टेक्स्ट प्राइस फील्ड टाइप न्यूमेरिक लेंग्थ को 5 और डेसिमल प्लेसेस को 2 में बदलें
फॉर्मेट एक्जाम्पल बटन पर क्लिक करें
यह फील्ड फॉर्मेट विंडो ओपन करता है
कैटगरी लिस्ट से करेंसी और फॉर्मेट लिस्ट से इन्र चुनें
आरएस
123400 चुनें जिसमें दो दशमलव अंक हैं
ध्यान दें कि दो दशमलव अंको सहित पूरी लैन्थ 5 है
ओक बटन पर क्लिक करें
अब हमने बुक्स टेबल के लिए सभी कॉलम्स बना दिये हैं
अब टेबल को सेव करें
सेव आइकन पर क्लिक करें जो फाइल मेन्यू के नीचे है
टेबल नेम टेक्स्ट बॉक्स में बुक्स टाइप करें
ध्यान दें कि यह डेटाबेस लाइब्रेरी में समान लोकेशन पर सेव हुआ है चूंकि टेबल्स डेटाबेस का हिस्सा हैं और ओक बटन पर क्लिक करें
अगले ट्यूटोरियल में हम बुक्स टेबल में डेटा जोड़ेंगे और मेम्बर्स और BooksIssuedबुक्स इश्यूड टेबल्स बनायेंगे
हम इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर हैं
संक्षेप में हमने निम्न सीखाः लिबरऑफिस बेस क्या है
बेस का उपयोग करने के लिए जरूरी चीजें
आप बेस में क्या कर सकते हैं
रिलेशनल डेटाबेस की मूल बातें
नया डेटाबेस बनाना नया टेबल बनाना
इस क्रम का अगला ट्यूटोरियल टेबल्स टेबल्स और रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स है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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
यह स्क्रिप्ट देवेन्द्र कैरवान द्वारा अनुवादित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद